इसने व्हाइट कलर की टी-शर्ट ऊपर से ग्रीन कलर की जॉकेट और नीचे जीन्स और पैरो में स्लिपर्स पहनी हुई है वे झूले झूलते समय बहुत हस रहा --

उसके पीछे एक दिवाल हैं। दिवाल पर वाइट कलर का पेन्ट हुअल तथा उसमें एक कमेरा लगा हुआ हैं।

उसके आगे एक पेड़ है और उसके आगे बहुत सी ऑटो खड़ी हुई है ऑटो में दो आदमी बैठे हुए है। जिसमे एक आदमी ने ब्लैक कलर की शर्ट और दुसरे ने वाइट कलर --

यह एक मार्केट एरिया है यहाँ पर बुक की बोहोत सारी बूके हैं बुक के पीछे दो आदमी बैठे हुए हैं। एक ने वाइट कलर की शर्ट पेहनी हुई है तो दूसरे ने पिंक कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

यह एक बिल्डिंग है। यहाँ बिल्डिंग बोहोत ही सुंदर है। इसमें वाइट कलर का पेंट हुआ है।

बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बोहोत तरह की लाइटें लगी हुई हैं। जिसमे लाइटों का रंग ब्लू एंड वाइट एंड पिंक है और यहाँ पर उसका गेट है। गेट पर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं उसके निचे सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों के निचे एक इंसान खड़ा है।

जिनमे से एक बच्ची ने पिंक कलर की टीशर्ट और दूसरे ने ग्रे कलर की कुरता और तीसरा में रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है तीनो एक-दूसरे को देख रही है। झूले के पास पीछे बिल्डिंग है।

एक मार्केट एरिया हैं यहाँ पर बहुत सी दुकाने है यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग है एक बिल्डिंग पर भगवान की पेंटिंग का चित्रण हुआ है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हैं।

जिस ने तशीर ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई उसने अपने मुँह पर कुछ दाडी रखी हुई है और एक लड़की है जो साइकिल से जा रही है ।

एक साथ मे पुलिस वाले खड़े हुए है। उनके बगल मे दो आदमी खड़े हुए है। जिस मे एक आदमी ने ब्लू कलर का पैंट ब्लैक कलर की टी.शर्ट और मूह पर रुमाल बाँधा हुआ है ।

एक क्लिनिक है यहा पर बहुत से लोग है। पीछे के साइड मे दीवार पर येलो एण्ड व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

यहा पर एक पर्दा लगा हुआ है। जिस का कलर ब्लू कलर का है। परदे के पास दो लेडिज खड़ी हुई है। एक लेडिज ने साड़ी पहनी हुई है दूसरी ने व्हाइट कलर का सलवार कुर्ता पहन हुआ है। दोनों ने अपने मुँह पर मास्क लगाया हुआ है ।

दूसरे आदमी ने कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लू कलर की शर्ट पहनी--

यह एक रोड का एरिया है। इसके सामने एक पुल है। पुल के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है। पुल के बगल मे एक खंबा है ।

अपने पेट को कवर किया हुआ है ब्लू कलर की टावल से एण्ड उसने क्रीम कलर की टीशर्ट एण्ड व्हाइट कलर --

यह एक अ रेल्वे स्टेशन है यहा पर सारी बहोत सारी भीड़ है यहा पर बहोत सारे रिकसे खड़े हुए है। यहा पर एक आ लड़का जो ब्लू कलर की टीशर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए है उसके हाथ पर फोन है।

यह एक पार्क का एरिया है। यहा पर बहुत सारे छोटे बड़े एण्ड बहुत ही ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक लेडिज है। जो--

यह एक पब्लिक प्लेस है यहाँ पर बहोत सारे झूले लगे हुए है यहाँ पर खूब बड़े - बड़े झूले लगे हुए हैयहाँ से एक आदमी जा रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

एक आदमी है जिस ने येलो कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है ऑरेंज कलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके बगल में एक लड़का खड़ा है जिसने व्हाइट --